हाँ मुझे दिख रहा है। लग रहा है के ये बहुत बड़ा कारखाना है। लोहा का। कुछ लोग हैं यहाँ पर चार पांच लोग है। जिसमे से दो लोग बैठे है। और दो लोग खड़े है। हैं।

फिसलने का खेलने का बच्चों का बहोत सारा पानी में खेलने का भी बहोत सारा सामान है नीचे पूल भी है और कुछ ब कोई बच्चा नहीं है पूरा खाली है साफ पानी दिख रहा --

वहां मुझे दिख रहा है एक महिला कथक डांस करते हुए नृत्य करते हुए दिख रही है मुझे।

ऑ- ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है गोल्डन पॉड में बगल में भी एक महिला है वह भी वह भी नृत्य कर रही है पीछे पोस्टर लगा हुआ है।

वहाँ भी ईंट का बना हुआ है टूटा-फूटा वो दिख रहा है।

ऑटो दिखाई दे रहा है गाड़ी है पेड़ है कफी सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे है तार लटके हुवे है आसमान दिखाई दे रहा है दुकान दिखाई दे रहा है।

यहाँ भी दिख रहा है एक पुल हाईवे जैसा रास्ता ट्रक दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

और बॉर्डर बना हुआ है लाल पीले रंग से आसमान भी दिख रहे है पेड़-पौधे भी है और बीच मे एक लाइन --